यह एक बाग है और यहाँ पे छोटे-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए हैं घास भी बनी हुई है खेलने योग्य स्थान भी बना हुआ। खेलने का सामान रखा हुआ है और रोड भी बना --

यहाँ पर सुंदर बाग है और यहाँ पर छोटी-छोटी घास लगी हुई है और पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह एक दरगाह बनी हुई है और उसके सामने का सीन दिखाई दे रहा है और खुला आसमान भी दिखाई दे रहा है और मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

और द्वार के बगल पर कुछ व्यक्ति भी खड़े हुए हैं और वाहन भी चल रहे हैं और यहाँ पर हम अपना गल्ला बेच भी सकते हैं और कुछ खरीद भी सकते हैं।

यह एक जीम क्लास है जहां पर लोग आकर अपनी बॉडी को फिट और हिट और शरीर को स्वस्थ बनाते हैं।

और यहाँ पर लोग आते हैं और स्वस्थ रहते हैं और किसी भी प्रकार बीमारी नहीं होती।

ली हुई है और यहां पर वृक्ष भी लगा हुआ है| खुला आसमान दिखाई दे रहा है और गेट भी बना हुआ है।

यह एक बेड़ है जिस पर दो व्यक्ति आसानी से लेट सकते हैं इसे डबल बेड कहते हैं और --